खिडकियां काले रंग की दिखाई दे रही है।

बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा --

उधर भी बहुत सारी मुर्तियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आसपास टेबल खुर्सी डली हुई--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

यहाँ एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

हिरन दिखाई दे रही है आस - पास बड़े - बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है।

नीले हरे सफ़ेद गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें बड़े - बड़े पोस्टर लगे हुए --

छ्त दिखाई दे रहा --